ऊ गाछ सब उधर लगा हुआ है आसमान का सीन बहुत अच्छा है आदमी सब बैठा हुआ है और सीडी बहुत अच्छा--

पे घर बना हुआ है बोहोत सारा सभी घर बहुत ही अच्छा लगता है ओर आसमान का कलर बहुत अच्छा है यहा का बहुत ही अच्छा लोकैशन है। व्यू बहुत--

व्यू बहुत अच्छा है और यहा का जो है अम लोकैशन बहुत अच्छा है। आप लोग आइए घूमिए बहुत ही मजा कीजिए जी बिल्कुल।